टमाटर है मटर छीमी है मिर्ची है हरा।

मंदिल है बढ़िया एक गाछी है पेपर के गाछ है।

इधर बग मंदिल के बगल मे भी दूनू तरफ गाछी है।

आर हे एकगो चरखा न छिट् के लड़का ने कुर्ता पहले हे लड़का है खड़ा--

ऊपर आसमान भी ब्लू ब्लू लगता है सब रकम के--

ढेर सारा आदमी कसरत कर रहा है।

ढेर सारा आदमी जा रहा है आ रहा है। ऊपर में घर है गेट बना हुआ है। इधर टेबुल है कुर्सी है मोटरसाइकिल है।

तरफ घर है आ गाछ है सिरी लगा हुआ है। आँगन मे पेड़ अच्छा लग रहा है। गा- गाछी है।

बगल मे भी घर है गाछ पौधा है सब कुछु है अच्छा लग रहा है।